सामने किचन के स्लैब पे एक डब्बा रखा हुआ है दो ट्रॉली खुली हुई है।

यहां पर एक पास में दुकान भी है।